और इस शोरूम ब्लैक कलर का है शोरूम के बाहर लिखा है एंट्री गेट ।

और बेडरूम का सोफा पे तकिया का कलर है पिंक --

और यहां पर रेस्टोरेंट का कलर सफेद और कत्थई कलर है।

मुझे मेरे सामने एक मॉल जैसा कुछ दिखाई दे रहा है मॉल के सामने एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमे वी टू लिखा हुआ है।

और यहां पर एक पर्स दिखाई दे रहा है और यहां पर एक-दो आदमी भी घूम रहे है।

मुझे यहां पर एक रूम जैसा कुछ दिखाई दे रहा है रूम में बहुत सारी वाशिंग मशीन जैसी कुछ चीजे रखी हुई है।

और ये एक घर नीले कलर का है उस पर टीन सेट है।